ओ भाई इस मार्केट में काफी भीड़ दिखाई पड़ रहा है एक चौड़ाहा लग रहा है और यहां पर--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

आदमी जो है यहां पे बैठे हुए हैं और चाय पीने के लिए।

यहां एक वर्क शॉप अ कार का है जो कि यहां पर कार को लेकर आये हैं कुछ कार में गड़बरी --

यहां पर आप देख सकते हैं कोई एक अच्छा सा भक्ति यहां पर प्रोग्राम हो रहा है जिसमें की दो महिलाएं--

अह जो है टी शर्ट और शर्ट भी उपलब्ध है यहां पर।